जिसमें एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है जो कि भूरे कलर का पैंट हुआ उसमें और पर्दा लगा है जो कि बैगनी रंग का है और वह खुला हुआ पर्दा है।

औरतें साड़ी पहनी हुई हैं और आदमी लोग शर्ट पैन्ट पहेने हुए हैं और पीछे एक स्टेज बना हुआ है।

और बाहर कुछ आदमी लोग बैठे हुए हैं और कुछ औरतें बैठी हुई हैं जो कि बूढ़ी औरत है और वह साड़ी पहनी हुई है।

एक सड़क है जोकि डामर वाली है उसके सामने एक सफेद कलर की पट्टी बनी हुई है बगल में एक बहुत बड़ी बाउंड्री है जोकि दीवाल है जिसमें सफेद कलर का पैंट हुआ है। सामने एक गेट है जो कि भूरे कलर की है।